यह रोड है रोड पे बहुत सारे गाड़ियाँ चल रही है मोटर साइकिल चल रहा है।

मंदिर है मंदिर बहुत सुन्दर है | उजला कलर की पेंट से पेंट किया हुआ है | नीचें पीला कलर का पेंट से पेंट किया हुआ है | दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा है |

देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है स्कूटी भी है एक आदमी है दो चादर ओढ़े हुए है देखने मे बहुत --

यहाँ पे एक गुफा है। गुफा बहुत सुन्दर बनाये गए है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है असमान भी दीख रहा है।